किराने के सामान के उचित रेट पर मिलते हैं।

की फोटो है इसमे साथ में मुकुट पेहन राखियाँ बहोत सारी फूल्लो की मालाएं है।

इस फोटो मे हम देख सका है यह एक किताब्बा की दुकान है। जिथ जिथ हम देख सको की कितने की किताब है जो मे लाग री है।

वगैरा दिखाई दे रहीं हैं बहोत सारे पेड़ वेड़ हैं और--

ग्रीन कलर का कारपेट है एक आदमी ने शूज डाल रखे हैं और ऑरेंज कलर की शर्ट है पंखे लग रहे हैं लाइट है।